यह एक होटल की फोटो है जो की एक होटल का रूम हो सकता है यहां पे हमें--

और यहां पे हमें एक स्टेयर्स लगी हुई दिख रही है शायद स्कूल अभी अभी बन ही रहा है।

और यहां पे छोटे-छोटे से पौधे भी--

जोकि शायद बच्चों के दवाइयों की दुकान है।